ये गुरु द्वारा श्री गुरु सिंह धावा साबा का है यहां पे फूल का हार डाला गया है चाकू रखे हुए हैं।

बिल्डिंग में बहुत सारे यहां पे थिएटर फिल्म भी दिख रहे है यहां पे सामने---

ऐ_सी_ है एलईडी लाइट्स वल्फ छोड़े गए हैं।

यहां पे बहुत सारे टेबल है बैठने के लिए।

हैं और यहां पे बहुत सारे लोग बैग पहने हुए हैं बैठने आए हैं और यहां पे कुछ लिख रहे हैं।

बहुत सारे अलग-अलग के पौधे यहां पे जमा के पास में रखे हुए यहां पे बहुत सारे खुले बुटियां पॉर्ड्स भी रखें---

तो खाया जा रहा बाहर यहां पे एक अदमी है और यहां पे नीचे हरी भरी घास हैं पत्ते गिरे हुए हैं।

घड़ी भी लगाए गए पूरा यहां पे टेंशन ---

बहुत सारे यहां पर डब्बे हैं लोग हैं।

मैं यहां पे एक---

टैक्सियां खड़े हुए हैं बारिश आ रहा है नीचे पानी दिख रहा है।

फसल उठी हुई है यहां पे बीच में रास्ता है।

यहा पें दरवाजे को बनाया जा रहा है।